ये किसी के जिम का दृश्य नजर आ रहा है यहां पे बॉडी बिल्डिंग के कई सारे तस्वीरे नजर आ रही है।